बाल्टी हैको कार्टून हैको आदमी हैको

गाड़ी हिको | घर हीको। | कुर्सी हीको |टेबुल हीको मशीन हीको| कैमरा हीको || टी_वी हीको | एल_सी_डी हीको।

केला के गाछ हेको लकड़ी हिको एगो जानवर हिको ।

हॉस्पिटल हीको हिसपिटल में कुर्सी हीको| इंजोरी आबे हको| खिड़की लागल हीको| आदमी सब बैठएल हीको| देखे हीको--